याली भी कुछ जगह पर दिख रही है।

बीच फेवरेट कारपेट बिछा हुआ है।

बैकग्राउंड में हरी भरी घास दिख रही है।

बिल्डिंग में ब्रेक पिलर्स दिए गए है।

बीच में एक लोहे का क्लाइंबिंग फ्रेम या झूला स्ट्रक्चर है।

मिरर के सामने काउंटर पर सामान पड़ा है सीलिंग पर एक फैन लगा है।

डिस्प्ले काउंटर में कई तरह की घड़ियां लगी है।

बैकग्राउंड में एक नदी है जो कि रिवर फ्लो कर रही है।

सीमेंटेड पाथ या फुटपाथ साइड में बना है।

गार्डन के आस पास प्लांट्स और स्क्रब लगे हैं।

पीछे घना हरा जंगल और पहाड़ी एरिया है।

इस तस्वीर में एक बोरी नजर आ रही है।

राइट साइड में घास और जरियां है।